और पीछे की ओर तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह एक कमरा है जिसमें बहुत सारे गेट लगे हुए हैं और एक मेज भी रखी हुई है।

और सी_सी_टी_वी कैमरे भी लगे हुए हैं और लाइटे भी।

और यह कुछ तोड़ रहे है साइड में पेड़ पौधे भी खड़े हुए है।

और शीशे की खिड़कीयां भी है और पंखे लाइटें भी लगी हुई है एक घड़ी भी है।

यह एक सुनार की दुकान है जिसमें बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं।

और दो महिलाओं के फोटो भी है।

और एक रेड कलर का घर भी है।

और पोल के ऊपर भी लाइटें लगी हुई है साइड में एक घर है जिसके पास एक खंभा है और उस पे लाइटें भी लगी हुई है नीचे कुछ पौधे है।

और बहुत सारे फल भी रखे हुए हैं और लाइटें भी लगी हुई है।

नीचे एक व्यक्ति खड़ा फोटो खिंचवा रहा है जिसके पीछे एक बैग है।

और उसके हाथ पर एक घड़ी भी बंधी हुई है।